भारतीय डाकिये लिखा हुआ है। बिहार के मार्केट उपडाक घर।

ये एक बिल्डिंग बनी हुई है इसमें गेट है नी नीले साइड का जो साइड में शटर लगा हुआ है उसके आगे बाइक खड़ी हुई है औ और इसमें ये ऊपर --

कृष्णा इंटर कॉलेज करमां गया है बिहार विद्यालय परीक्षण समिति उच्च माध्यमिक पटना बिहार सविंधान।